बहोत सारी कार खड़ी हैं सफेद कलर की कुछ टार्जन टैक्सी खड़ी है मोटरसाइकिल खड़ी है कुछ आदमी और महिलाएं खड़े हैं।

इस फोटो में हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हज़ार उन्नीस दरवाजा के आगे बहोत सारे लोग खड़े हैं।

सामने बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं पौधे लगे हुए हैं हरी हरी घास लगी हुई है।

अह नीले कलर का एक और डस्टबिन पड़ा है सामने।

सामने एक दुकान है दुकान के अंदर एक आदमी बैठा है आदमी की ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं जींस पहनी हुई है।

सामने लगी है पर्दे लगे हुए है सामने चार्ट है चार्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है इस लड़की के बाल खुले किए हुए हैं और --

एक डांस कर रही है इनके हाथों की पोछती हुई है हाथ इधर ऐसे किए हुए हैं।

और पीछे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं कुछ एक टंकी पड़ी है सफेद कलर की पीछे पर्दे लगे हुए है।

नीचे टाइलें बिछी हुई है सफेद कलर की--

हमारी तरफ बहोत ऊंचा बंगला है दरिया बिछाई हुई है बंगले के आगे गाड़ी खड़ी है सफेद कलर की।

यहां पर सामने बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर के ऊपर लाल कलर किया हुआ है।

आ पीछे बहोत सारी साड़ी पड़ी है तरह तरह के कपड़े पड़े हैं अलग अलग कलर के अलग अलग डिजाइन के --

इस चित्र में एक आदमी है आदमी के टी शर्ट और लोअर पहने हुए हैं पैरों में जूते पहने हुए हैं।

प्लेट पड़ी है पानी की बोतले पड़ी है और सॉस के डिब्बे पड़े है टिश्यू पेपर पड़े है सामने बहोत सारे आदमी खड़े है।

और ऊपर कुरकुरे चिप्स के पैकेट लटक रहे हैं अंदर की साइड बहोत सारा सामान बड़ा है।

एक मटकी पड़ी है बाहर गमला लगा हुआ है और एक कुर्सी पड़ी है बाहर और भी कुर्सियां पड़ी है --

यहां पर से हमने बुक पड़ी है बहुत सारी और बुक का सेट अलग-अलग रखा हुआ है पीछे भी बहुत सारी बुक पड़ी है।